हो मा का पोल खड़ा बा ओपर तार खींचल बाटे नीचवा हरा रंग क घाँस बाटे आ खूब खी न् फूल लगवाल बाटे एमे।